यहां एक बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ पर बहोत सारी किताबें हैं और सामने एक कैमरा भी लगा हुआ है।

वह एक सजावट की तरह दिख रहे हैं ऊपर की तरफ ए_सी लगा हुआ है।

एक आदमी ए_टी_एम से पैसे निकल रहा है कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है दोपहर का समय है।

की तस्वीर है जहां लिखा हुआ है मिथिला बुक सेंटर ।

मीनार तीन तरफ से दिखाई दे रही है मीनार का रंग ग्रे है।

जिन्होंने स ग्रीन रंग का शॉर्ट पहना हुआ है सर पर सफ़ेद--

गांव में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

सेल के लिए गीजर लगी हुई है और पंखे भी लगे हुए--

यह श्री वेज लीला हॉट डॉग की शॉप है।

कॉरिडोर में बहुत छोटे छोटे आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं।

पहाड़ की ऊंचाई है। ऊंचाई पर कुछ घर बने हुए हैं।

यहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

जिसने अपने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ है।